यहां पर बहुत सारे कलश सजे हुए हैं उन पर कुछ माला लगी हुई है।

जिम की मशीने रखी हुई है अहां पर--

यहां पर नारियल का तेल और कुछ सिर में लगाने के तेल रखे हुए है।

यहां पर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

वहां पर इस दुकान का गेट कांच का है इस दुकान का गेट खुला है।

यहां पर कुछ रिक्शे और कुछ गाड़ियां भी खड़ी है।

यहां पर कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं।

यहां पर इस ए_टी_एम का गेट कांच का है।

यहां पर एक मॉल का नजारा है।

यहां पर कुछ मिट्टी भी लगी हुई है।